बहुत सारे लोग चलते खड़े नजर आ रहे हैं।

येलो कलर का बहुत गंदगी फैलाई हुई है टाइल्स पे।

गोल्डन कलर का पानी लग रहा है।

दोनों साइड पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ घास डिजाइन से काटे गए हैं।

छत पे बहोत खूबसूरत लाइट की गई है।